अ जिसमें स्टील के खम्भेनुमा बैरियर लगे हुए हैं। बैरियर --

मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ कुर्सी और बीच में कांच का मेज रखा --

अ मुझे यहाँ पर एक बोहोत बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है। जिसमें अ कुछ लाईटें लगी हुई हैं सफ़ेद कलर की पीले कलर की।